जैसे की मेथी या पालक के पराठे बने हों।

एक पेड़ की टहनियाँ पड़ी हुई हैं।

और इस पर विश्वनाथ क्लॉथ --

आहाँ पर हमें एक शटर दिखाई दे रही है।

जो वाइट कलर का मास्क लगाए है।

कुछ रंग-बिरंगे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। लेडीज सूट साड़ी --